आगे कि तरफ एक स्टेज हैं जिसे फूलो और लाइटों से सजाया गया हैं।

हां तरह तरह की सब्जियाँ हैं।

यहाँ पत्ते गोभी की खेती की गई है गोभियो को एक पंक्ति में लगाया गया है।

पीछे के तरफ एक ए.सी भी है दो लाइट लगे हुए है यहाँ बेंच पर बैग है।

यहाँ एक पीले रंग का झूला यह बच्चो का झूलने वाला स्लाइडर है।